क्लाउड दिख रहा है जो की ब्लैक एंड वाइट है नदी का पानी बड़ा ही साफ़ और दिख रहा है।

गाय की भी बहोत सारे कलर है एक ब्लैक कलर की गाय हैं व्हाइट कलर की गाय हैं रेड कलर की गाय है।

आजु बाजु पेड़ दिख रहे है उसी के बाजु में सीढ़ी है सीढ़ी के ऊपर एक गाड़ी पार्क है।

सामने की पिक्चर में ऐसा लग रहा है की कोई फंक्शन चल रहा है।

और कमरा बड़ा ही शानदार पुटा हुआ है वाइट और ब्लू कलर से--

इसमें सब लोग खाना खा रहे है उसी के आजु बाजु--

सामने दिखाई गयी पिक्चर में बहोत सी ज्यादा छोटी छोटी घास है।

आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ पोधे लगे हुए है।

यह एक मेन रोड की पिक्चर है उसी के बाजु में एक छोटा सा ग्राउंड है जिसमे--

बगल में ही इंडियन पेट्रोलियम है उसके बाजू में ही पाच ट्रक खड़े है एक कार खड़ी है।

पहाड़ भी दिखाई दे रहे है नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे व बड़े बड़े सारे पौधे दिखाई दे रहे है गार्डन में एक बोर्डेर है।

और सामने ही एक वाइट कलर की बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

चार इंसान दिखाई दे रहे है एक कार दिखाई दे रहे है कार में पेट्रोल भरा जा रहा है।

सामने वाली दिवार पर जो बारा फोटोज लगी हुई है घर की--

सामने एक बहत सुन्दर छोटा सा प्यारा सा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे की बहत सारे गमले है गमलो का कलर --

जिम है जिसपे छोटे छोटे पोधे लगे हुए है।

पीछेभी गमले रखे हुए हैं जिनका कलर भी ब्लैक --

रेड वाइट कलर के फूल लगे हुए है और पुरा गार्डेन --

नेट से कवर है उसके पीछे एक बड़ा पौधा लगा हुआ है।

वहाँ कुछ खोखे रखे हुए है टियूब लाइट भी लगी हुई है निचे टाइल्स भी लगी हुई है ।

बेंचेस रखे हुई है टेबल लगी हुई है टेबल पर अनेक प्रकार का सामान रखा हुआ है।

और वहा पर बहोत सारे लोग आए हुए है।

अजु बाजु पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है मंदिर बहत ही ज्यादा सुन्दर सजा हुआ है रंग बिरंगे --

एक इंसान गार्डन की तरफ वॉक करता हुआ जा रहा है बिल्डिंग का कलर --

गार्डन में अनेक प्रकार के घास है जो की बहोत ज्यादा बड़े--

और स्टेज के डेकोरेशन बहोत ही ज्यादा रंगीन है।

दी गए पिक्चर में सामने है एक स्कुल है उसके सामने दो बस पार्क है।

गार्डन है गार्डन में छोटी छोटी घास आजू बाजू हरियाली छाई हुई हैं।

पौधे भी लगे हुए है उसी के बगल में एक डस्टबिन रखी हुई है।

स्कूल का कलर जो येलो ग्रीन और ऑरेंज है।

सामने एक फ्रूट की एक दूकान दिखाई दे रही है दूकान पर एक अंकल बेठे हुए है जो की अभी फोंन चला रहे है।

फ्रूट में अनार आम सब कुछ रखा हुआ है केले पाइन एप्पल तरबूज सब कुछ।

सामने चाट बनती हुई दिखाई दे रही है एक अंकल के हात में चाट का कटोरा भी है।

चाट में छोले आलू प्याज सेव सब दिख रही है एक टेबल पे लगी हुई है।

सामने एक बोहोत ही ज्यादा बड़ा वाला झील दिखाई दे रहा है और उसमे बोहोत साड़ी घास उगी हुई है।

सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन के साइड में वेन खड़ी हुई है।

सामने गार्डन में एक आंटी पानी देते हुए दिखाई दे रही हैं पानी एक ग्रीन कलर के पाइप में से आया रहा है जोकि आंटी पौधों में दे रही हैं।

सभी ने ब्लैक कलर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है आजू बाजू ग्रीन कलर के पौधे दिख रहे हैं।

एक अंकल घोड़ा बने हुए है जिन पर एक अंकल खड़े हुए है।

जो कुछ काम कर रहे है और यह एक बिल्डिंग है जिसमे टिउबलाइट्स लगी हुई है पंखे भी लगे हुए है।

दी गई पिक्चर में एक कैफे दिखाई दे रहा है जिसका नाम यादव्स है कैफे बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा।

यहाँ वाइट कलर की दिवार से बना हुआ हैउसी में --

नीले कलर के सोफे रखे हुए है चॉकलेटी कलर के टेबल्स रखी हुई है।

पीछे ही पहाड़ दिख रहे हैं और बड़े बड़े पौधे भी दिख रहे हैं।

सामने एक दुकान दिखाई दे रहे है जिसका नाम वक्ली स्टोर --